क्लब दिख रहा है बैनर दिख रहा है पोस्टर लगे हुए हैं तार की खिड़कियां दिख रही हैं मकान दिख रहा है खुदा हुआ ईंटे दिख रही है।

मकान दिख रहा है लड़के दिखाई तीन चार एक पेड़ दिख रहा है पेड़ों पे को --

लाइटें दिख रही हैं मरकारियां जल रही है रंगी-बिरंगी ग्रीन कलर जामिनी कलर व्हाइट कलर मकान दिख रहा हैं गमले दिख रहे है पेड़--

तिरंगे का रंग कलर दिख रहा है जेंट्स वगैरह दिख रहा है साइकिल के पीछे कुछ बंधा हुआ है ग्राउंड दिख रहा है ग्रीन कलर की दुभा दिख रही है।

दिख रही है चेयर के ऊपर चेयर के ऊपर भाइट कलर रेड कलर की पट्टी बंधी हुई हैं बलून दिख रहे हैं कलर दिख रहे है कांच की खिड़किया दिख रही हैं लाइटें दिख रही हैं बलून रेड कलर के है ---